यह एक दुकान है यह दुकान बहुत ही बड़ी दिखाई देती है इस दुकान में बहुत तरह के समान देखे जाते हैं यह दुकान से बहुत समान लेने लोग यहाँ आते हैं।

यह एक नर्सरी है इस नर्सरी में काफी फूल के पौधे दिखाई देते है यह नर्सरी देखने में बहुत अच्छे लगते है यहाँ सभी तरह के फूल का पौधा मिलता है ।

यह एक स्कूल है यहाँ पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है इस इस स्कूल में एक बड़ा गेट है गेट के अंदर स्कूल है वह बहुत बड़ी जगह पर है यह स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते --